यहां मुझे कुछ वाहन दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ टूल दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक किलवा दिखाई दे रहा है।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

फोटो में मुझे लाइट दिखाई दे रही है।

यहां मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।